उसमे नीचे से जमीन है वह पूरी मिट्टी की हैपिछले साइड मंदिर हैदरवाजे है सीलिंग पर फैंस है और उसे नजरिया काफी इन --

फोटो में एक ग्ररे कलर की कार दिखाई दे रही है|

एक निम्बू है पनीर का टुकड़ा है गाजर है थोड़े से प्याज है और उसके आजू बाजू में थोड़े सब्जियां है।

फोटो में एक नीचे टेबल दिया हुआ हैउसके ऊपर एक पुराने काल का अच्छा प्राचीन पत्थर है।

फोटो में आश्मान में से बारिश हो रही है।

दिगई तस्बीर में काफी धुप दिखाई दे रही है पेड़ पौधे आस -पास का काफी मुरझाये हुई है काफी पत्थरीला इलाका है।

ये फोटो में एक बिल्डिंग दिख रही है जिस बिल्डिंग के काफी खिड़कियां है काफी तीन मंजलियाँ है।

दी गयी तस्वीर में एक खुला हरा भरा एरिया एक खुला एक हरा भरा मैदान दिखाई दे रहा है जिसके निचले क साइड में काफी चीखल भी है।